और साथ में पेड़ खड़े हुए हैं पेड़ों का कलर ग्रीन कलर का कलर हैऔर बाहर एक रोड बनी हुई हैजो बहुत नीट एंड क्लीन हैऔर बहुत अच्छा लुक आ रहा हैबिल्डिंग का और बहुत अच्छा--

जो कि लोगों को अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं कोई कैशयर बेठा रहता है कोई लोन डिपार्टमेंट में बेठा रहता है।

ग्राउंड के बीच में रोड जा रही हैजिससे जो भी लोग आते हैं ग्राउंड प जाते हैंबहुत--

ये बहुत बड़ी सी एक कोई किसी का घर बना हुआ है घर के नीचे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं लोग लाइन से घर के अंदर जा रहे हैं।

ये बहुत बड़ा सा एक डिपार्टमेंट स्टोर बना हुआ है डिपार्टमेंटल स्टोर में बहुत सारी रैक लगी हुई है।

और रैक इसके अंदर बहुत प्यारे रैक लग रहे हैंरै--

कम से कम फाइव सिक्स सेवन लोग नमाज पढ़ रहे हैंऔर मस्जिद पे--

हॉल पे बहुत अच्छी-अच्छी एक बैनर भी लगा हुआ हैऔर यहां पर--

ये बहुत बड़ी सी एक टॉय की शॉप लग रही है और इसके अंदर बहुत से डेकोरेटिव आइटम भी रखे हुए हैं।

कोठा पड़े हुए हैंजो ज्यादातर लेडीज घर में यूज करती है।

और सामने बहुत बड़ी बस खड़ी हुई है बस के अंदर कोई लोग नहीं है क्योंकि रात का समय हो गया है।

और इसकी बिल्ड़िंग बहुत बड़ी लग रही है और बिजली के बाहर एक ए_सी का आउटो लग रहा है।

ये एक बहुत बड़ा सा एक हॉल लग रहा है ये आई थिंक सामने--

बहुत सारी फोटोज बनी हुई है बच्चों की कार बनी हुई है ऑटो रिक्शा की--

अलग-अलग लुक के एक बास्केट है दो फ्लावर पॉट लग रहे हैं और--

एक बहुत बड़ा सा एक ग्राउंड लग रहा है ग्राउंड --

और यहां पर बहुत सारी बाइक्स स्कूटीस एंड बहुत सारी बाइक स्कूटी हुई है।

एंजॉय ले रहे हैं घास पर बैठने का और यहां का व्यू बहुत अच्छा आ रहा है ऊपर इस टाइम रात हो रही है जहां पर लोग--

लाइटिंग के साथ-साथ नीचे बहुत सारी टेबल एंड चेयर पड़ी है।

बॉडी फिट करने के लिए और अपनी बॉडी को सही सही रहने के लिए उन्हें एक्सरसाइज सिखा रहा है और इस टाइम वो उनको कोई योगा टाइप क्लास दे रहा है और बहुत अच्छी फोर्थ पे लाइटिंग --

रिपेयर होने आई है जिसको एक आदमी खड़े होकर चेक कर रहा है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और पीछे का पूरा बोनट बाइक को--

रखा है और पीछे की वॉल रेड कलर की वॉल है जिसमें बहुत सारा बाइक को ठीक करने के लिए सामान रखा हुआ है और बहुत अच्छा लुक लग रहा है।

बहुत बड़ा सा एक ग्राउंड लग रहा है ग्राउंड में बहुत सारी ग्रास है और ग्रास और ग्राउंड के ऊपर बहुत सारी बेंचेस लगी है जिस पर लोग आके वहां पर बैठते हैं और--

अपने घर को डेकोरेट करने के लिए यहां पर आकर फ्लावर पॉट परचेस करते हैं और अपने घर को डेकोरेट करते हैं।

और ये टेबल पड़ी हुई है चेयर पड़ी हुई है बहुत अच्छा लुक आ रहा है।

ये बहुत बड़ी सी एक वॉल है पीछे वॉल का कलर एक ग्रे कलर का कलर है और आई थिंक यहां पर बहुत सारी लेडीज बैठी हुई है।

और एक साथ में एक रोड जा रही है जिस रोड के--

किसी को बीमारी होती है कुछ होती है वो मेडिसन परचेस करके--

ये एक बहुत प्यारा सा एक फ्लावर लग रहा है फ्लावर का कलर रेड कलर का फ्लावर है बहुत प्यारा फ्लावर लग रहा है के लिए भी बहुत अच्छी लग रही है बहुत अच्छा लुक आ रहा है।

ये एक बहुत अच्छा सा दिवाली का--

एलिवेशन बना हुआ है बाहर का और बहुत सारे मीनार से बने हुए हैं।

कोई इनका फेस्टिवल हो रहा है केरला का वो केरला का फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हैं।